जो लाल और सफेद रंग की है जिनके ऊपर पन्नियां चढ़ी हुई है।

एक हाल है हाल के बीच में एक टेंपू खड़ा हुआ है जिसे दो लोग बना रहे हैं जिसने--

ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है पिलर पे और नीचे की तरफ लोहे के वायर लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है जी मेडिकल नीट ।

मेज है लाल रंग की उसके पीछे एक काले रंग की कुर्सी पड़ी हुई है।

पीछे की दीवार लाल रंग की है उसके पास में एक शीशा लगा हुआ है।

कुर्ती के नीचे की तरफ मोर की मूर्ति है जो कि नीले रंग की है।

एक मकान बना हुआ है जिसके सामने का गेट ग्रे कलर का है और दीवार भूरे और पीले कलर की है।

उस पे बोर्ड लगा है जिसका नाम है आराध्य ग्रॉसरी स्टोर ।

रोड के किनारे एक दुकान है जिस पे काफी सारे मिट्टी के बर्तन बना कर रखे हुए हैं।

उसके पास में एक बुक की शॉप है जिसका नाम है माडर्न बुक डिपो ।

और उनके पास में छोटे छोटे घास लगी हुई है और पीछे की तरफ काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

गाड़ी के आगे बीच में एक आदमी खड़ा है जिसने एक पीले रंग का कु कुर्ता और लाल पैंट पहन रखी और नीले रंग का बैग टांगा है।

जिन्होंने काले रंग की टीशर्ट पहन रखी है और एक बाइक खड़ी है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है।

एक बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसके छत के ऊपर काफी सारे शिखर बने हुए हैं।

एक आदमी पत्थर फोड़ रहा है जिसने पीले रंग का हेलमेट पेहन रखा है।

और पीछे की तरफ एक बांस लगा है जिसके ऊपर सफेद रंग की बोरी लगी हुई है।

के पास में लकड़ी का सूखा पेड़ है जिसके ऊपर एक भूरे रंग का और काले रंग का सांप लपेटा हुआ है।

रैक के अंदर काफी सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सामान रखें हैं जिसमें भगवान की प्रतिमा और खिलौने रखे हुए हैं।

छोटी छोटी बड़ी बड़ी सी मूर्तियां रखी हुई हैं काफी सारे भगवान की और खिलौनो की।

उसके पास मे काफी सारे गमले रखे हुए है छोटे छोटे।